यहां कुछ सवारी ऊपर छत पे बैठी है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत अच्छा होटल दिखाई दे रहा है।

यह मंडी दिखाई दे रही है यहां आलू और प्याज टमाटर--

बहोत सुंदर पंखा भी लगा हुआ है और खिड़की दरवाजे बहोत सुंदर सुंदर दिखाई--

और गैस सीएनजी डलवाने आते हैं।